आमने में बैलून से डेकोरेट किया हुआ है।

एक लंबा सा पेड़ भी नजर आ रहा है।

यह एक टेंट के जैसा बना हुआ है।

एक काले रंग का डोर मैट भी रखा हुआ है।

बड़े बड़े पेड़ भी हैं बड़े बड़े पेड़ों को आधा व्हाइट रंग से रंगा गया है।

सामने एक कांच का दरवाजा भी है जो कि बंद है।

यह एक कपड़ा का दुकान है जिसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए और रखे हुए हैं।

जिसका साइड का रंग पीले रंग का है।

जिसमें दो ए_सी लगे हुए हैं यहां चार लाइटें है जो जल रहे हैं।

इसमें चार पिलर भी दिख रहे हैं।

यहां एक टी_वी भी लगा हुआ है।

दरवाजे पर एक स्टीकर भी चिपका हुआ है जो कि आधा उखड़ा हुआ है।

यहां एक टेबल के ऊपर दो काले बैग भी पड़े हुए हैं।